बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है बस जो की एक आदमी भी है मेरे को लगता है बहुत शानदार जगह है नीचे टाइल्स भी लगा है बहुत अच्छा है टॉवर भी है।

बहोत ही अच्छा रोड दिखाई दे रहा है जो कि एक टेम्पो आ रही है और बगल में पेड़ भी है अच्छा दिखाई दे रहा है जगह का लुक भी बहोत अच्छा है बादल भी दिखाई दे रहा है ऊपर में--

प्लेटफार्म है ये तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है जोकि बहुत सुन्दर ओवरब्रिज है बहुत शानदार दिख रहा है प्लेटफ़ार्म --

बहुत ही अच्छा बुक टाइप में दिख रहा है अच्छा है जो भी है डायरी या फिर दुकान दिखाई दे रहा है बहुत सु अच्छा है यहाँ जाते होंगे लोग समान ले लेके आते है शायद --

यहाँ पर मछली दिखाई दे रहा है बहुत लेडीज अपना पर्स से पैसा निकाल रही है शायद खरीदे गी मछली बहुत ही अच्छा दुकान किया है।

एक तालाब है जोकि बंधाया है एक साइड से बहोत अच्छा दिख रहा है पानी--

और पत्थल टाईप में मिट्टी है बहोत अच्छा दिखाई दे रहा हैं।